मंदिर के अकार जैसा और उसके नीचे बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है।

बहुत साफ दिख रहा है कुछ कुछ जगह कचरा पड़ा हुआ है बगल में सफेद कलर के फार्म में लगा रखे हुए हैं जाली वाले |

बंगलो के सामने एक छोटा-सा पार्क बना हुआ है बागीचा।

बहोत सारी लकड़ियां टिकी हुई है यहाँ पर।

कुछ लोगो खड़े है यहाँ पे और कुछ लोग बैठे हैं ऊपर की साइड पे सफेद कलर की लाइट जल रही हैं गमले रखे हुए है यहाँ पर |

दो इन्सान है जो यहाँ पे खड़े हुए है ।

जिसमें काफी सारी चॉक्लेट ऐड कर दी गई है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा घना पेड़ दिखाई दे रहा है

यहाँ पे एक मकान बना हुआ है ।